रंग बिरंगी टेबल कुर्सियां है छोटी छोटी बच्चियां हैं।

बहोत धूप है खुला आसमान है और लोग यहाँ पर चल फिर रहे हैं।

छोटे छोटे पेड़ है डॉल है टॉय है चॉकलेट्स है गॉगल्स रखे हुए है लाइटिंग की गई है इसकी--

और आपस में बातचीत भी कर रहे हैं।

बहोत अच्छा लग रहा है साफ है साफ भी है और पेड़ पौधे भी है रंग बिरंगे।

बहोत बड़ा लोहे का एक पोल लगा हुआ हैं।

वहाँ रुकने के लिए आते है किसी भी लोकेशन में बाहर- वाहर जाते है तो --

जिम क्लास है जहां पे टाइल्स लगी हुई है बहुत सारे जीम और एक्सरसाइज करने की मशीन है एक लड़का खड़ा हुआ है।

माहौल एकदम शांत है। ऐसा माहौल ही बहोत बहोत अच्छा लगता है दिल को सुकून देता है। खिड़कियां है।

अलमीरा है जहां पे कपड़े रखे हुए हैं पंख लगे हुए हैं।

पंखे लगे हुए हैं टाइल्स लगी हुई हैं बहोत अच्छा है।

माताएं जो हैं ओ चल रहीं हैं बैठी हुई हैं कुछ कुछ कुछ बातें कर रहे हैं।